शो केस के अंदर ठंडे का बोतल और पानी के बोतल रखे हुए हैं।

सड़क के ऊपर कई तरह के गाड़ियां है।

यह चित्र एक पार्क की है।

इस चित्र में छत का रंग लाल है।

बेड के ऊपर चार तकिये दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक हॉस्टल की है।

इस चित्र में बहोत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में गेट का रंग हरा है।

इस चित्र में बहुत सारे मूर्तियां नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में पीछे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में दो आदमियाँ दिखाई दे रहे हैं।

गेट के ऊपर एक नीले रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

यह चित्र इंडिया पोस्ट की है।

आदमी ने हरे रंग का शर्ट पहना हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में कई सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे आदमियां दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक फायर नजर आ रहा है।

यह चित्र एक गार्डन की दिखाई पड़ती है।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

इस चित्र में कई सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

दोनों बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दीवार का रंग बैगनी कलर है।